जो होता हैं पब्लिक को आकर्षित करता है कि मतलब इसमें कपड़ा लिया जाए और लड़का का भी कपड़ा अच्छा।

ब्लू लाइट से ग्रीन लाइट से सजाया गया है जो की बहोत ही सुंदर है।

यहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है छत है नारियल का पेड़ है नदी है।